इधर लाइट नजर आ रहा है फर्श नजर आ रहा है फर्श उधर व्हाइट कलर की नजर आ रहा है।

सारे पेड़ नजर आ रहा है बहुत सारी गाड़ियां नजर आ रही हैं ब्लैक ब्लू व्हाइट कलर की गाड़ियां नजर आ रही हैं।

यहां बहोत सारी पेड़ें नजर आ रही है भैंसे नजर आ रही है भैंसे तलाब के नदी में अंदर जा रही है भैंसे पूरे काले कलर की नजर आ रही है।

और गिलास नजर आ रहा है बहुत बड़े बड़े बर्तन नजर आ रहे हैं कुछ लोग खा रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं कुछ लोग पी रहे हैं।